ऐश कलर का दिख रहा है क्युकी इसने कोई इफ़ेक्ट लगाया हैऔर उसका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा लग रहा है और वो जो कांच मे फोटो ले रहा है उसके निचे ग्रीन कलर का पेंट किया हुआ है जो की अच्छा लग रहा है।